मुझे एक चित्र दिख रहा हैं चित्र में मुझे कई सारी लड़कियां दिखाई दे रही हैं।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

चित्र में मुझे लाइटिंग जलती हुई दिख रही हैं चित्र में मुझे सभी लोग अपनी अपनी दरी पर बैठे दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे दुल्हन और दुलेहन दिखाइ दे रहे हैं।

चित्र में मुझे स्टेज टावर से डेकोरेट किया हुआ--

चित्र मे मुझे बच्चे अपनी अपनी बुकेज ओर कॉपियां रखे हुए दिख रहे है।

कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए दिख रहे हैं चित्र में एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई--

चित्र में मुझे लड़के ऊपर चढ़े हुए देख रहे हैं चित्र में बच्चे अलग अलग कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे और कई लोग दिख रहे हैं चित्र में--

दिखाई दे रहा है चित्र में मुझे कई सारे पर्दा लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।